यह एक पेट्रोल पंप है यहां पर दो मशीन हैं पेट्रोल डालने वाली।

पेट्रोल पंप के सामने एक दीवाल है दीवाल के पास बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और उसी के दूसरे साइड एक पिलर है पिलर के बगल में दो छोटे छोटे डंडे लगे हुए हैं।

एक पर्सन ने ब्लैक कलर का पूरा ड्रेस पहना हुआ है और एक पर्सन का चहरा हाइड है।

पास में ही एक मैकेनिक ट्रेन में कुछ कर रहे हैं।

आसपास ग्रीन कलर के बहुत सारे छोटे बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

माताजी की मूर्ति है अह वो काफी सुंदर लग रही है का--

यह विधानसभा की इमारत है और इसके टॉप पे एक स्टार लगा हुआ है और कुछ ही दूर पे एक फ्लै इंडियन फ्लैग लगा हुआ है।

इसपे बहुत सारी ब्लैक व्हाइट कार है और साथ में दो ब्लैक और एक ब्लू कार है जिसका गेट खुला हुआ है।

एक गार्डन है जहां पर बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

और काफी सारे लोग हैं जो अपना अपना सामान बेच रहे हैं।

ये एक जिम है जहां पर दो जेंस है एक लेडिस है और काफी सारी पिक्चर के पोस्टर लगे हुए हैं।

ये एक तालाब है जहां से पानी आ रहा है।

यहां पर एक पेड़ लटका हुआ है। इसपे हरी क कलर की पत्तियां है और कुछ ब्राउन कलर की हैं।

काफी सारे पत्थर हैं अलग-अलग शेप और साइज के --

नदी के पार काफी सारे घर हैं बड़े बड़े छोटे छोटे घर है।

और यहां पर लकड़ी का काम चल रहा है कारपेंटर लोग लकड़ियां काट रहे हैं एक आरी पड़ी हुई है।

एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है। सामने बोर्ड लगा हुआ हैं जहां प पुलिस चौकी लिखी हुई हैं।

के लिए रोड बनी हुई है उसी के बगल में एक बेंच पड़ी हुई है वहां पर जाल लगा हुआ है।

यह एक जूलरी शॉप है जहां पर तीन सैंपल रखे हुए हैं।

यहां एक मैरिज लॉन का गेट है यहां पर एक वॉचमैन बैठे हुए हैं।

के लिए पूजा पाठ के फूल रखे हुए हैं।

बाहर साइड एक कांच का शीशा लगा हुआ है उसके ऊपर काॅफी कप बना हुआ है।

टेबल है ब्राउन कलर की उसी के नीचे एक हीटर रखा हुआ है उस--

यह एक कॉलेज का रूम है यहां पर व्हाइट कलर का दीवाल पे एक बोर्ड लगा हुआ है।

उस फ्लोर पे एक कार दिखाई दे रही है सिल्वर कलर की।

पे टावल लगा हुआ है और दूसरी साइड एक एंटीना लगा हुआ है।

काफी सारी डिशेज रखी हुई है हर टेबल पे एक लैंप रखा हुआ है लाइटें जल रही हैं।

और एक ए_सी है और एक अलमीरा रखी हुई है पास में ही एक सोफा रखा हुआ है ब्राउन कलर का और डार्क ब्राउन कलर का और उसपे लाइट ब्राउन कलर का सोफा कवर है।

एम जे फन सिटी है जहां पर एक येलो कलर का गेट लगा हुआ है जालीदार।